यह पिक्चर एक मोबाइल शॉप का है इसमें बहोत सारे मोबाइल है चार्जर है दो चार पांच फोन खराब भी है।

और वृक्ष भी यहां पे दिख रहे हैं और ये बहोत शांत जगह है।

ये एक महाविद्यालय का महाविद्यालय है जिसमें बहोत सारे बच्चे आए हुए है एक गाड़ी खड़ी है।

ये एक फील्ड है इसमें दो आ दो-चार बच्चे बैठे हुए हैं एक साइड एक साइड एक आदमी बैठे हुए है सामने घर दिख रहा है जो बहोत अच्छे लग रहे है देखने में।

अ पीछे बहोत हरियालियां भी दिख रही है अ पानी बहोत साफ है।

हैं यहां ब आइस आइसक्रीम बहोत ठंडे भी लग रहे हैं लेकिन केक बहोत अच्छे हैं।

ये एक मि नॉनवेज की दुकान है जिसका नाम चंपारन ढाबा।

बहुत सा बहुत पौधे पेड़ पौधे भी हैं एक झोपड़ी टाइप का--

पीछे अंकल लोग काम कर रहे हैं खेतों में और खेतों में पानी बड़ी हुई है पूरी--

यह एक फंक्शन का एक मेले का सीन है। बहोत अच्छी डेकोरेशन की गई है। यहां पर चार पांच आदमी है। एक बच्चा है जो फोटो ले रहा--